यहाँ पर एक ए.सी. लगी हुई है जो कि वाइट कलर की है एक पंखा लगा हुआ है।

पे कुछ लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पर कुर्सी नीले कलर की है और टेबल रखी हुई है टेबल के ऊपर कंप्यूटर है।

आसमान नीला है और यहां पर घाट बना हुआ है।

यहा पर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है बहुत सारे फूल लगे हुए है और घंटिया लगी हुई है।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

यहाँ पे एक फोटो कॉपी की दुकान है जिस पर दो लोग खड़े हुए है एक बाइक खड़ी हुई हैं।

की बाहर स्कूटी बाइक खड़ी हुई है और एक साईकल खड़ी हुई है।

यहां पर एक दुकान है के बाहर बहुत सारे गुड्डा गुड़िया टंगे हुए हैं और --